एक मशीन है एक सीढ़ी है बजरी है तसली है एक खम्मा है।

एक आदमी जब में हाथ देव खड़ा है। एक आदमी टोकरे के सामे बैठा हुआ है। एक टोकरा है।

शादी होने लग रही है शादी के लिए बैंकट हॉल सज रहा है।

पीछे येलो कलर का मकान है एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

एक रेड कलर के सोफे पड़े हुए हैं।

यहाँ पर मछ कुछ मशीने है जिनका रंग ब्लू है।

पीछे वायरलेस तार है पीछे कुछ मशीनें हैं।

एक ऊपर नीचे बोड लगा हुआ है।

यहां पर एक रोड है। कुछ खंबें हैं।

पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं जो लोहे के झूले टंगे हुए हैं साइड में--

एक कार ब्लैक कलर की है दो तीन व्हाइट कलर की है।

बॉक्स है कुछ तस्वीरें हैं एक लाइट बोर्ड है।

यहां पर गेहूं निकल रही है भूसे है।

दो तीन आदमी मशीन एक म मशीन के नीचे है एक मशीन के ऊपर बैठा हुआ है।

यहां पर एक फड़ो की दुकान है।

पीछे लाइट जल रही है।

एक लड़का दीवार के हाथ लगा के खड़ा हुआ है।

यहां पर कुछ डिजाइन रखे हुए हैं माला रखी हुई है कुछ मूर्ति रखी हुई है।

पीछे बड़ी बड़ी लाइटे जल रही है।

कुछ कट्टे हैं पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है रेड हरे कलर का।

बर्गर का पोस्टर है चिकन का है।

सामने एक बुक लगी बुक लगी हुई है।

यहां पर कुछ अलग अलग तरह के कप है ब्लैक व्हाइट पिक ।

पीछे एक थर्मस रखा हुआ है एक येलो कलर की बोतल रखी है एक आदमी है।

एक आदमी है लाइट जल रही है।

पीछे एक बैग रखा हुआ है एक फायर ब्रिगेड रखा हुआ है।

बीच में कुछ सामान रखा हुआ है।

सामने एक गेट है बराबर में कुछ लटका हुआ है।

यहां पर चार पांच मैट है पीछे की स्कूल है पीछे बड़े बड़े पेड़ है दो खंबे हैं।

नीचे कुछ कुर्सियां बिछी हुई हैं कुर्सियों पर कवर है।

तीन चार लाइट है दीवार पर डिजाइन बने हुए हैं।

पीछे एक पीले से सूट में एक लुगाई खड़ी है।

पीछे एक कार खड़ी है बराबर में व्हाइट कलर की।

टावर के टावर पर कुछ तार हैं।

टावर के पीछे एक घर है जिस पे व्हाइट टंकी रखी हुई है।

एक घर के बराबर का घर है जिसके टंकी ब्लैक रंग की रखी हुई है।

एक ल लड़की के हाथ में गुब्बारा है पीछे लाइट जल रही है दो तीन खंबे है।

कुछ ऊपर डिब्बे रखे हुए हैं। उम्म छोटे छोटे खन्ने हैं। गिलासें रखी हुई हैं।

नीचे पत्थल लखी हुई है।